java में this कीवर्ड के उपयोग पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
this कीवर्ड के उपयोग के बारे में
fields के साथ this कीवर्ड का उपयोग करने के बारे में
constructors के श्रृंखलन के लिए this कीवर्ड का उपयोग करने के बारे में
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए
eclipse का उपयोग करके java में constructor कैसे बनाएँ
यदि नहीं तो संबंधित tutorials के लिए दर्शाई गई हमारी website पर जाएँ
अब हम this कीवर्ड के बारे में जानेंगे
constructor में वर्तमान object के लिए this एक reference है
हम this का उपयोग करके constructor में वर्तमान object के किसी भी सदस्य member को refer कर सकते हैं
अब हम फिल्ड के साथ this कीवर्ड का उपयोग देखेंगे
this कीवर्ड हमें name के टकराव को दूर करने में मदद करता है
हम यहाँ इस तरह का एक उदाहरण देखेंगे
इसके लिए eclipse खोलें
student class खोलें जो हमनें पिछले tutorial में बनाया है
default constructor को comment करें 1 parameter के साथ constructor comment करें
और पहले दो objects बनाने के लिए code को भी comment करें
अब parameterized constructor पर ध्यान दें
the _ roll _ number और the _ name constructor के passed किए गए आर्ग्युमेंटस हैं
roll _ number और name instance variables है
अब मैं roll _ number और name arguments बदलता हूँ
अतः constructor के अंदर हमारे पास हैः
roll _ number equal to roll _ number और name equal to name
अब file को so और now करें अतः ctrl s और ctrl f11 दबाएँ
हमें निम्न प्रकार output मिलता है
i am a parameterized constructor
अब code पर वापस आएँ
हमें code में 2 चेतावनी देखते हैं
आपने mouse को चेतावनी symbol पर ले जाएँ
हम देख सकते हैं the assignment to the variable roll _ number has no effect
और the assignment to the variable name has no effect
ऐसा इसलिए क्योंकि constructor में roll number और name local variables हैं
local variables वह variables हैं जो method या block में एक्सेस करने योग्य होते हैं
यहाँ roll _ number और name 11 और raju होंगे
क्योंकि हमने constructor के रुप में values 11 और raju passed किए हैं
लेकिन एक but वे constructor के बाहर आ जाते हैं तो एक्सेस करने योग्य नहीं होते हैं
फिर हम जानते हैं कि roll _ number और name instance variables हैं
वे 0 और null से इनिशिलाइज हो जाते हैं जैसे ही object बन जाता है
अतः हमें output 0 और null मिलता है
अब constructor के अंदर एक छोटा परिवर्तन करें
अतः type करें this dot roll _ number equal to roll _ number
और this dot name equal to name
अब file को so और now करें अतः ctrl s और ctrl f11 कीज दबाएँ
हमें इस प्रकार output मिलता है
ऐसा इसलिए क्योंकि this dot roll _ number और this dot name instance variables roll _ number और name को संदर्भित करते हैं
और यहाँ roll _ number और name method में passed किए गए arguments हैं
local और instance variables के मध्य टकराव दूर करने के लिए हमारे पास this कीवर्ड है
अब हम constructor के श्रृंखलन के लिए this कीवर्ड का उपयोग देखेंगे
हम this कीवर्ड का उपयोग constructor के अंदर किसी अन्य को कॉल करने के लिए कर सकते हैं
constructors समान class में होनी चाहिए
यह explicit constructor invocation कहलाता है
अतः student class पर वापस जाएँ जिसे हमनें बनाया है
अब comments को हटाएँ
अब पहले दो constructors में instance variables की values निर्धारित करने के लिए भाग को comment करें
फिर उस भाग को comment करें जो दूसरा और तीसरा objects बनाता है
अब पहले constructor पर parameters के बिना आएँ
curly brackets के बाद type करें this brackets में 11 और semicolon
दूसरे constructor के अंदर type करें this brackets में 11 comma double quotes में raju semicolon
अब file को so और now करें अतः ctrl s और ctrl f11 दबाएँ
हमें इस प्रकार output मिलता है
i am a parameterized constructor
i am a constructor with a single parameter
i am default constructor
अब मैं output समझाता हूँ
जब object बनता है संबंधित constructor कॉल होता है
यहाँ constructor argument रहित constructor है
constructor में control पहली line पर आ जाता है
यह सामना करता है this brackets में 11 statement
इसलिए यह ऐसा constructor calls करता है जो single integer argument स्वीकरता है
फिर control this brackets में 11 कॉमा raju पर आ जाता है
इसलिए यह ऐसा constructor calls करता है जो 1 integer और 1 string argument स्वीकारता है
अतः यह constructor निष्पादित होता है और हमें यह output मिलता है i am parameterized constructor
अब instance variables 11 और raju के लिए इनिशीलाइज होंगे जैसे हमने passed किए
अब control calling constructor पर वापस जाता है
अतः दूसरा constructor निष्पादित होता है
हमें output मिलता है i am constructor with a single parameter
फिर control पहले constructor पर जाता है और इसे निष्पादित करता है
अतः हमें output मिलता है i am a default constructor
फिर studentdetail method निष्पादित होता है
अतः हमें 11 और raju मिलता है
अब एक छोटाnow परिवर्तन करें
this statement को constructor में आखिरी रखें
हमें compiler error मिलती है
error symbol पर mouse रखें
हमें एरर मिलती है:constructor call must be the first statement in the constructor
अतः हमें इसे constructor में पहली line में रखना चाहिए
अतः इसे constructor की पहली line बनाएँ
अब हम देख सकते हैं कि error हट गई है
अतः इस tutorial में हमने सीखा
fields के साथ this कीवर्ड का उपयोग करना
constructors श्रृंखलन के लिए this कीवर्ड का उपयोग करना
constructor में this कीवर्ड का उपयोग कैसा होना चाहिए
स्वमूल्यांकन के लिए पहले बनाए हुए employee class में
दो parameters के साथ एक constructor बनाएँ
instance variables को इनिशीलाइज करने के लिए this कीवर्ड का उपयोग करें
1 और बिना parameters के साथ एक constructor बनाएँ
tutorial में दिए गए विवरण के अनुसार this का उपयोग करके constructors का श्रृंखलन करने का अभ्यास करें
spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
यह भारत सरकार एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है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
अब हम इस tutorial के अंत में आ गए है
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद